और ये लोग यहाँ योग कर रही है। योग करने से हमारा --

शरीर जो है स्वस्थ रहता है हमे रोजाना यो --

यहाँ पर दो गधा पला हुआ है।